बैंक के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर बोहोत सारे लोग आयें हुए हैं।

फ्री मिलता है। इस रेस्टोरेंट का नाम केरला होटल है।